मैट बिछी हुई है मकान में खड़ी हुई है बहोत अच्छी लग रही है।

आदमी बात कर रहे हैं माला लगी हुई है बड़ी सी बल्डिंग है विंडो दिखाई दे रहे हैं।